यहां पे बहुत ही अच्छा व्यू गार्डन बना हुआ है जो की हरियाली के साथ--

और यहां का टाइम बहोत फिक्स इनके रूल्स बहोत ही अच्छे और बढ़िया--

पूरे पठानकोट में आर्मी पर्सन के पास है और ये टेंक चौक के नाम पे बहुत ही--